जो कुछ बता रहा है एक लड़की भी खड़ी हुई है एक चेयर रखी है ।

यहां पर बगीचा लगा हुआ है ग्रीन कलर का।

और क्रीम कलर भी पुता हुआ है बाहर एक स्‍कूटी --

यहाँ पर बहुत शुन्दर दुकान लगी हुई है फल फ्रूट है और एक --

और लिखे हुए भी हैं ब्‍लू कलर में ।

पीछे और बगीचा भी दिख रहा है इशके ग्रीन कलर में |

ये एक मंदिर है इसमें शाईबाबा भी बैठे हुए हैं ।

दो बस खड़ी हुई है व्‍हाईट कलर की ।

एंड इसमें स्‍लीपर वगैरह टाइप का कुछ रखा हुआ है ।

रोड पर बहुत सुन्‍दर लग रहा है यहाँ पर |